और इसमें कोई भी इंसान नहीं है।

बैकग्राउंड में एक पेट्रोल पंप को दिखाए दिखाया गया है।

बैकग्राउंड में सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का लाइटिंग वाला बैनर लगा हुआ है।

ऊपर हॉल सीलिंग में चार लाइटे लगे हुए हैं।

एक इमारत है जिसके नीचे--

कुछ व्यक्ति यहां नमाज पढ़ रहे हैं।

पीछे में कुछ बिल्डिंगे दिख रहे हैं।

वे एक लोग रेती के ऊपर खड़े है।

और कुछ लड़कियाँ मास्क मे है।

स्क्रीन पर एक हेयर एक्सपर्ट प्रोफेशनल सैलोन दिख रहा है।

प्लेट ले कर खाना खा रहे हैं।

जिसमें दो बालिकाएं नृत्य कर रही है।

गेंदें के लरी से सजा हुआ है।

और कुछ लोग अंदर में हैं।

व्हाइट रंग के शर्ट पहने हुए है।

बेचने वाला आदमी उल्टा खड़ा है।

घर का छत को ढलाई करते हुवे दर्शाया गया हैं।

स्क्रीन पर एक ढाबा दिख रहा है।

पीला रंग का है और उसके सामने में ही एक आदमी खड़ा हुआ है।

उसके पास में ही एक छोटा सा मंदिर है जिसके सामने एक पेड़ भी है।

और फ्यूल्स में कुछ लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं।

और कुछ लोग गाड़ी से जा रहे हैं।